चारों ओर घर बने हुए हैं यहां पास बहोत सारे चट्टान टूटे हुए डले हुए हैं।

चारो ओर लोग बैठे हुए हैं यहां पास--

इस फोटो में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जहां पास बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

खड़े हुए हैं। यहां पास बड़ी बड़ी दुकाने हैं और दुकानों के बाहर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है साथ में यहां पास --

बहोत से लोगों की गाड़ी भी खड़ी हुई है दुकान के बाहर कैमरे लगाए गए हैं।

चारों ओर दुकानें बनाई गई हैं और यहां पास कुछ गाड़ी खड़ी हुई हैं यहां पर स्कूटर लोडर खड़े हुए हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारी कार दिखाई दे रहीं हैं।

गाड़ी खड़ी हुई है कुछ लोग यहां पास खड़े हुए हैं।

बहोत सारी छोटी छोटी घास उगी हुई हैं और बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं।